हरा हैं और सामने काटे का कलर सलेटी और सफेद हैं दरवाजे कलर पिला हैं।

सामने ट्रॉलि खड़ी का कलर पिंक हैं माता की मूर्ति का कलर गुलाबी है लाल है।

माले का कलर पीला लाल व्यक्ति का कलर सलेटी और ब्राउन है।

और ये दो व्यक्ति खरा है कपरा खोलें पर्पल और उं कला इसकी कलर सफेद --

दीवारों का कलर क्रीम है एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है कपड़ो कलर सफेद और लाल --

छत का कलर पर्पल और काला है झूमर का कलर गोल्डन पीला और रोशनी सफेद है।

आसमान का कलर काला है व्यक्ति के अलावा कपड़ों का कलर स्लेटी और कला है।

पौधे उनका कलर हरा है एक सामने इमारत है उसका कलर पीला है।

छामरला का कलर ऑरेंज है ये गुब्बारे का कलर पीला है बाइक का कलर काला है लड़के के कपड़ों का कलर काला है।

कार का कलर पर्पल है और एक सामने आसमान है फैला --

व्हाइट बल्ब हैं बहुत दूर एक बाइक खड़ हैं।

कलर काला है कलर हरा और भूरा है।

लेती है काला गमछे का कलर पीला है।

दो एक पर्पल लाल हरा सफेद --